बड़ा सा बिल्डिंग हैं जोकि व्हाइट कलर में उसमें शीशे लगी हुई खिड़की है।

इसमें बहुत बड़े बिल्डिंग का दृश्य दिखाया गया है जो की सफेद कलर का है।

छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं।

बगल में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो की सफेद कलर में है उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं।

इसमें बहुत सारे मनुष्य का दृश्य दिखाया गया है।

नीचे रंग बिरंग की चटाई बिछी हुई है।

इसमें बहुत सारे सामान है इसे खाने के चना चूर है बिस्कुट है ब्रेड है।

लोहे के बने हुए हैं।

एक कैमरा लगा हुआ है।

बहुत सारी मूर्तियां हैं जैसे भगवान की मूर्तियां हैं खिलौने की मूर्तियां हैं।

इसमें एक किचन रूम का दृश्य दिखाया गया है।

एक औरत है जो की सफेद कलर कपड़ा पहना हुआ है।

बगल में वाइट कलर का बोर्ड है उसमें चार्जर लगा हुआ है।

टेबल के ऊपर बहुत सारे वस्तु रखे हुए हैं जैसे छोटे पौधे हैं एक बड़ा सा घड़ी है।

बगल में ब्लू कलर का बाल्टी है उसके ऊपर भी एक मशीन रखा हुआ है।

यहां बहुत सारे टोकरी रखी हुई है रंग बिरंगी रेड और पीली।

एक शीशा है जिसके अंदर बहुत सारे सामान है।

बगल में ये प्लास्टिक से घिरा हुआ है।

वह सारे साइकिल के नीचे खड़े हैं जो की लड़की और लड़का दोनों के हैं।

बगल में बैलून सजा हुआ है जो कि पीला कलर में हरा कलर व्हाइट कलर में।

इसमें एक बहुत बड़े हाइवे का दृश्य दिखाया गया है।

इसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही है जैसे टोटो है बाइक है कार है।

इसमें एक बहुत बड़े रेसलिंग का स्टेडियम दिखाया गया है।

लोहे के खंबे हैं रेड कलर ब्लू कलर में छोटी छोटी कुर्सीया है बैठने वाली।

इसके आस पास बहुत सारी पानियाँ हैं।

नीचे बाउंड्री जैसा घेरा हुआ है उसके आस पास बहुत सारे घर हैं सफेद कलर के पीले कलर के।

इसमें एक बोर्ड टंगा हुआ है बहुत सारे फोटो टंगे हुए हैं।

इसके आस पास बहुत सारी लकड़िया गड़ी हुई है।

बहुत सारे छोटे छोटे पौधे है।

यहां पर काफी सारे साइकिलों का दृश्य दिखाया गया है जो बड़े साइज में है मीडियम साइज में है।

यह एक पार्लियामेंट का बिल्डिंग है इसमें बहुत सारे द्वारा है बहुत सारे खिड़की है।

बड़े बड़े पेड़ हैं इसमें एक मशीन जिसमें पाइप निकला है जिसमें प पानी निकल रहा है।

रेस्टोरेंट शिशो से घेरा हुआ है।

बिल्डिंग का कलर येलो और ऑरेंज में है।

इसमें एक कॉफी शॉप रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है।

फिर पैम्पर्स है फिर बहुत सारे शैंपू टंगे हुए मैगी टंगे हुए है।

और सारा मसाला टंगा हुआ है कुड़कुड़े है।

पीले कलर के छोटे गेट लगे हुए बगल में बहुत बड़े बड़े पौधे हैं।